ये एक जिम क्लास है यहा पे जिम होती है और यहा पे एक लड़का खड़ा हुआ है जो मोबाईल टच मोबाईल चला टच मोबाईल चला रेया है और यहा पे पूरा जिम का समान भी रखा हुआ है।

और यहाँ पे जमीन बनी हुई है।

एक बड़ा सा पाइप भी बना हुआ है यहाँ पे--

नदी में यहाँ पे बहोत बड़ी पुलिया बनी हुई है यहाँ पे बहोत सारे खम्भे लगे हुए है और यहाँ पे एक पुलिया बनी यहाँ पे रोड भी लगी हुई है।